इसमें लिखा हुआ है उमा पुस्तक भंडार।

एक ऑटो खड़ा है सब्जी का दुकान है।

और झूला लगाया हुआ है।

यह एक समुन्द्र का दृश्य है।

और पहाड़ दिखाई दे रहा हैं।

यह एक मार्केट का दृश्य है।

और पटरी पे टी_वी रखा हुआ है।

बहोत सारे बड़े बड़े पत्थल है।

और पेड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक मार्केट का दृश्य है।

इसमें बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं।

और बहुत सारे ऑटो हैं।

यह एक घर का दृश्य है।

दीवाल का कलर लाल है।

और बहुत से डिब्बे पे चॉकलेट रखा हुआ है।

और दालमोट रखा हुआ है और टेबल पे एक वेट रखा हुआ --

पर घघरी दिखाई दे रहा है।

और वो सारे खिड़की है।

दीवाल का कलर लाल है।

बहुत सारे व्यक्ति लोग हैं।

और पूरा दिया गया है।

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

यह एक घर का दृश्य है।

जहां पर अलग अलग कार्य हैं।

और टावर जैसा बनाया हुआ है लाल और सफेद रंग से पेंट किया गया है।

बगल में घर है एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है।

गेट का कलर मिट्टी है।

और सीढ़ी बनाया हुआ है।

और तार रखा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

पानी बोटल है सैनिटाइजर है और बोर्ड लगाया हुआ है।

और बहुत सारे पटरी बनाया हुआ है।

यह एक रूम का दृश्य है।

यह एक रूम का दृश्य है।

खिड़की पर पर्दा लगाया हुआ है।